जेंट्स पैन्ट्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पीला कलर का मकान है। आसमान --

है लिखा हुआ है और बहोत सारे मकान हैं। मंदिर --

अ स्टूडियो कार्ड योजना --

और ठंडी की समय है।